यह बकेट मे कुछ आलू रखे है आलू पे बहुत सारी मिट्टी हो रही है और --

सीढ़ी पर रेड कार्पेट बिछाया हुआ है और साइड मे फ्लावर पोट रखा हुआ है दो।

ये एक अ हवाई अड्डा है जहाँ पे एक बहुत बड़ा व्हाइट कलर का ऐरोप्लेन खड़ा हुआ है।

लोहे का डंडा गड़ा हुआ है उसपे झंडे लगे हुए हैं पीछे वाइट कलर का कुछ घर बना हुआ है और फील्ड पे हरी छोटी घास लगी हुई है।

ये एक क्रिकेट फील्ड है ग्राउंड है और जहाँ पे कुछ लोग है नीचे लेटे हुए एक इंसान खड़ा हुआ है उसने उसका पैर पकड़ा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारी बाइक्स रखी हैं सफ़ेद कलर की भी हैं काली कलर की है लाइट के तार दिखाई दे--

अ यह एक टैबलेट है पे एक इंसान उलटा लेटा हुआ है पीछे येलो कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है इस इंसान के हाथ मे घड़ी है।